बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है।

एक लोग ए.टी.एम के अंदर पैसे निकाल रहा है और रात का समय है ए.टी.एम के अंदर सफ़ेद कलर की लाइट भी नज़र आ रही है और एक व्यक्ति ग्रीन कलर की टीशर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइट भी अलग-अलग कलर की दिखाई दे रही है और एक कैमरा का स्टैंड भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का मैट भी दिखाई दे रहा है ।

इस जगह कुछ लड़कियां रंगोली का काम कर रही हैं रंगोली बना रही है और कुछ लड़कियां ब्लू कलर की टीशर्ट पहनी हुई है ।